जिसने हरे कलर की साड़ी पहनी हुई है।

यह एक समुद्र के किनारे नाव खड़ी है।

और उसके बगल में दो व्यक्ति और एक लेडिज खड़ी हुई है।

हमने एक वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

सामने कुछ दूरी पर एक गाड़ी खड़ी हुई है।

सामने ग्रीन कलर का पार्क है।

साइड में एक ब्लैक कलर की कुर्सी रखी हुई है।

तीन गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

ग्रीन कलर का पोस्टर लगा हुआ है।

कुछ बैठने के लिए सिल्वर कलर की कुर्सियां रखी हुई हैं।

एक रेड कलर का थैला है।

यह एक स्टेज है जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां लगी हुई हैं सीढ़ियों का कलर ब्लैक है।

व्यक्ति ने ब्लू कलर के टी शर्ट व लोअर पहनी हुई है।

यह एक जंगल का दृश्य है।

बहुत सारे हिरन खड़े हुए हैं कुछ हिरण घास चर रहे हैं।

बहुत सारे डोंगे रखे हुए हैं व बहुत सारे गिलास रखे हुए हैं।